यहाँ पे हम देख रहें हैं एक दुकान है।

होटल उटल हमको दिखने से लग रहा है बहोत --

यहां पे हम देख रहे है राम सेवक --

है। एक रूम जैसा बहुत फील्ड --

यहां पे खेत उत हमको दिखाई दे रहा है एक लड़का भेस उस चारा रह --